एक रास्ता है रास्ता के बीच में छोटा छोटा बास है।

और उसके अंदर कुछ टाइलें दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

इसपे बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहा है।

लड़का खड़ा हुआ है कि जो--

एक दिखाई दे रहा है।

अंदर जैसे की सीरी कलर डिब्बा--

यहां देखये पर ये एक बड़ा सा एक गेट है।

उसके नीचे आयरन गेट लगा हुआ है।

कही बालु भी है और उसके सामने --

घर दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है जिसमें व्हाइट ग्रीन ब्लू सब कलर के हैं।

बरा सा खिरकी जिसमें एक--

यहां पर टो गाड़ी दिखाई दे रहे है।

इसके दो बगल में दो--

मुझे इस तस्वीर पर एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक वॉल है वॉल पे--

वन के आगे एक बड़ा सा पथ--

ग्लास तीन बॉटल है प्लास्टिक बॉटल और पियानो है।